जैसा की यहाँ देख रहे हैं यह एक झील हैं।

पत्थरों के बीच एक बहुत ही बड़ा गैप हैं।

और कोटक का जो बैंक होता है वो --